पूरा लाल और सफेद से पेंट करे ल तीन चार ठे उइ जे जलत ह आगे शटर भी लगे ल शटर जऊन की उठल ह। एटीएम खुल चुकल ह। सबेरे क --